लक्ष्मी जी शंकर जी --

भी कई सारे लोग दिखाई दे रहे है नीचे मेट्स लगे हुए हैं।

बच्चे शायद अपना प्रोजेक्स बना रहे हैं।

और इधर दशहरे का मेला लगा हुआ है।

यहाँ हाट सेफ में कुछ सजावट हो रही है।

किनारे-किनारे घास वास भी उगी हुई है।

काफी सारे पेड़ पौधे हैं जो लगे हुए हैं।

बहोत सारे पेड़-पौधे भी दिखाई दे रहे है फ्लावर्स के भी पेड़ है।

इनका चेहरा ऐसे दिख रहा है मानो अभी बोल देगा उन्होंने मुकुट पहन रखा है।

में सजावट हुई है ये पैसे से एरिया दिखाई दे रहा हैं।

पेड़-पौधे बहोत ही छोटे-छोटे से सब दिखायी दे रहे हैं।

दिखाई दे रही है मेरे ख्याल से वही की मंडी टाइप --

कई सारे फ्लेवर में आइस-क्रीम --

क्यूंकि फ्रिज के अंदर नहीं रहेगी तो मेल्ट हो जाएंगी।

छोटा सा प्यारा सा घर भी दिख रहा है यहाँ पे।

एक खम्बा सा दिख रहा हैं पेड़ दिख रहे हैं।

एक डम्मी भी खड़ी है जिसने एक टी-शर्ट पहन रखी है।